इस चित्र में ऐ एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

हरे भरी पेड़ दिख रहे--

सामने की तरफ एक बड़ा--

एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है।